कुछ मछलियां सफेद दिखाई दे रहीं हैं कुछ लाल दिखाई दे रही हैं।

जैसा कि देख पा रहै हैं एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन --

बहोत से बच्चे दिखाई दे रहे है ब्रेंच दिखाई दे रहा है बच्चे पेंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे है एक टीचर बैठी हुई दिखाई दे रहीं है।

जैसा की देख पा रहे हैएक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान काफी लंबी दिखाई दे रही है उसमे टेबल दिखाई दे रहे है।